मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
मन की बात के लिए मुझे आप सभी के बहुत सारे पत्र मिले हैं सोशल मीडिया और NaMoApp पर भी बहुत से सन्देश मिले हैं मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ
इस कार्यक्रम में हम सभी की कोशिश रहती है कि एक दूसरे के प्रेरणादायी प्रयासों की चर्चा करें जनआंदोलन से परिवर्तन की गाथा पूरे देश को बताएँ
इसी कड़ी में मैं आज आपसे देश के एक ऐसे जनआंदोलन की चर्चा करना चाहता हूँ जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है
लेकिन उससे पहले मैं आज की पीढ़ी के नौजवानों से 2425 साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और सवाल बहुत गंभीर है और मेरे सवाल पर जरुर सोचिये
क्या आपको पता है कि आपके मातापिता जब आपकी उम्र के थे तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छीन लिया गया था आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है ये तो असंभव है
लेकिन मेरे नौजवान साथियो हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था
ये बरसों पहले उन्नीस सौ पिचहत्तर की बात है
जून का वही समय था जब एमरजेंसी लगाई गई थी आपातकाल लागू किया गया था
उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे
उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला राइट टो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था
उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था
देश की अदालतें हर संवैधानिक संस्था प्रेस सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था
सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था
मुझे याद है तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया
रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई
लेकिन बहुत कोशिशों हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं रत्ती भर नहीं डिगा
भारत के हम लोगों में सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं जो लोकतांत्रिक भावना हमारी रगरग में है आखिरकार जीत उसी की हुई
भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही एमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की
तानाशाही की मानसिकता को तानाशाही वृतिप्रवृत्ति को लोकतांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है
एमरजेंसी के दौरान देशवासियों के संघर्ष का गवाह रहने का साझेदार रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला था लोकतंत्र के एक सैनिक के रूप में
आज जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है अमृत महोत्सव मना रहा है तो आपातकाल के उस भयावह दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए
आने वाली पीढ़ियों को भी भूलना नहीं चाहिए
अमृत महोत्सव सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति की विजय गाथा ही नहीं बल्कि आज़ादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा भी समेटे हुए है
इतिहास के हर अहम पड़ाव से सीखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपने जीवन में आकाश से जुड़ी कल्पनाएँ न की हों
बचपन में हर किसी को आकाश के चाँदतारे उनकी कहानियाँ आकर्षित करती हैं
युवाओं के लिए आकाश छूना सपनों को साकार करने का पर्याय होता है
आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है तो आकाश या अन्तरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं
देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इंस्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण
एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रोमोट कर रही है
इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है
मुझे बहुत से नौजवानों के इससे जुड़े संदेश भी मिले हैं
कुछ दिन पहले जब मैं इंस्पेस के हेडक्वार्टर के लोकार्पण के लिए गया था तो मैंने कई युवा स्टार्टअप्स के आईडीईएएस और उत्साह को देखा
मैंने उनसे काफी देर तक बातचीत भी की
आप भी जब इनके बारे में जानेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रह पाएँगे जैसे कि स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या और स्पीड को ही ले लीजिये
आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स के बारे में कोई सोचता तक नहीं था
आज इनकी संख्या सौ से भी ज्यादा है
ये सभी स्टार्टअप्स ऐसेऐसे आईडीईए पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था
उदाहरण के लिए चेन्नई और हैदराबाद के दो स्टार्टअप्स हैं अग्निकुल और स्काईरूट ये स्टार्टअप्स ऐसे लॉन्च वेहिकल विकसित कर रही हैं जो अन्तरिक्ष में छोटे पेलोड्स लेकर जायेंगे
इससे स्पेस लॉन्चिंग की कीमत बहुत कम होने का अनुमान है
ऐसे ही हैदराबाद का एक और स्टार्टअप्स ध्रुव स्पेस सैटेलाइट डिप्लॉयर और सैटेलाइट्स के लिए हिघ टेक्नोलॉजी सोलार पैनल्स पर काम कर रहा है
मैं एक और स्पेस स्टार्टअप्स दिगंतरा के तनवीर अहमद से भी मिला था जो स्पेस के कचरे को मैप करने का प्रयास कर रहे हैं
मैंने उन्हें एक चैलेंज भी दिया है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करें जिससे स्पेस के कचरे का समाधान निकाला जा सके
दिगंतरा और ध्रुव स्पेस दोनों ही 30 जून को इसरो के लॉन्च वेहिकल से अपना पहला लॉन्च करने जा रहे हैं
इसी तरह बेंगलुरु के एक स्पेस स्टार्टअप्स एस्ट्रोम की फाउंडर नेहा भी एक कमाल के आईडीईए पर काम कर रही हैं
ये स्टार्टअप्स ऐसे फ्लैट एंटेना बना रहा है जो न केवल छोटे होंगे बल्कि उनकी कॉस्ट भी काफी कम होगी
इस टेक्नोलॉजी की डिमांड पूरी दुनिया में हो सकती है
साथियो इंस्पेस के कार्यक्रम में मैं मेहसाणा की स्कूल स्टूडेंट बेटी तन्वी पटेल से भी मिला था
वो एक बहुत ही छोटी सैटेलाइट पर काम कर रही है जो अगले कुछ महीनों में स्पेस में लॉन्च होने जा रही है
तन्वी ने मुझे गुजराती में बड़ी सरलता से अपने काम के बारे में बताया था
तन्वी की तरह ही देश के करीब साढ़े सात सौ स्कूल स्टूडेंट्स अमृत महोत्सव में ऐसे ही 75 सैटेलाइट्स पर काम कर रहे हैं और भी खुशी की बात है कि इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स देश के छोटे शहरों से हैं
साथियो ये वही युवा हैं जिनके मन में आज से कुछ साल पहले स्पेस सेक्टर की छवि किसी सीक्रेट मिशन जैसी होती थी लेकिन देश ने स्पेस रिफॉर्म्स किए और वही युवा अब अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं
जब देश का युवा आकाश छूने को तैयार है तो फिर हमारा देश कैसे पीछे रह सकता है
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात में अब एक ऐसे विषय की बात जिसे सुनकर आपका मन प्रफुल्लित भी होगा और आपको प्रेरणा भी मिलेगी आई बीते दिनों हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्ख़ियों में छाए रहे
ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नएनए कीर्तिमान स्थापित कर रहें हैं आई फिनलैंड में नीरज ने पावो नुरमी गेम्स में सिल्वर जीता
उन्होंने अपने ही जावेलिन थ्रो के रेकॉर्ड को भी तोड़ दिया
कुओर्टाने गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया
ये गोल्ड उन्होंने ऐसे हालातों में जीता जब वहाँ का मौसम भी बहुत ख़राब था
यही हौसला आज के युवा की पहचान है
स्टार्टअप्स से लेकर स्पोर्ट्स वर्ल्ड तक भारत के युवा नएनए रिकॉर्ड बना रहे हैं आई अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रेकॉर्ड बनाए
आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल 12 रेकॉर्ड टूटे हैं इतना ही नहीं 11 रेकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं
मणिपुर की एम
मार्टिना देवी ने वेटलिफ्टिंग में आठ रेकॉर्ड्स बनाए हैं आई
इसी तरह संजना सोनाक्षी और भावना ने भी अलगअलग रिकार्ड्स बनाये हैं
अपनी मेहनत से इन खिलाडियों ने बता दिया है कि आने वाले समय में अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली है
मैं इन सभी खिलाडियों को बधाई भी देता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएँ भी देता हूँ
साथियो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की एक और खास बात रही है आई इस बार भी कई ऐसी प्रतिभाएं उभरकर सामने आई हैं जो बहुत साधारण परिवारों से हैं आई इन खिलाड़ियों ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया और सफलता के इस मुकाम तक पहुंचे हैं आई इनकी सफलता में इनके परिवार और माता पिता की भी बड़ी भूमिका है आई
70 किलोमीटर साइकिलिंग में गोल्ड जीतने वाले श्रीनगर के आदिल अल्ताफ के पिता टेलरिंग का काम करते हैं लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोरकसर नहीं छोड़ी आई आज आदिल ने अपने पिता और पूरे जम्मूकश्मीर का सिर गर्व से ऊँचा किया है आई वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाले चेन्नई के एल धनुष के पिता भी एक साधारण कारपेंटर हैं आई सांगली की बेटी काजोल सरगार उनके पिता चाय बेचने का काम करते हैं आई काजोल अपने पिता के काम में हाथ भी बंटाती थीं और वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस भी करती थीं
उनकी और उनके परिवार की ये मेहनत रंग लाई और काजोल ने वेट लिफ्टिंग में खूब वाह वाही बटोरी है आई ठीक इसी प्रकार का करिश्मा रोहतक की तनु ने भी किया है आई तनु के पिता राजबीर सिंह रोहतक में एक स्कूल के बस ड्राईवर हैं आई तनु ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर अपना और अपने परिवार का अपने पापा का सपना सच करके दिखाया है आई
साथियो खेल जगत में अब भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा तो बढ़ ही रहा है साथ ही भारतीय खेलों की भी नई पहचान बन रही है आई जैसे कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ओलंपिक में शामिल होने वाली स्पर्धाओं के अलावा पाँच स्वदेशी खेल भी शामिल हुए थे आई ये पाँच खेल हैं गतका थांग ता योगासन कलरीपायट्टू और मल्लखम्ब आई
साथियो भारत में एक ऐसे खेल का अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होने जा रहा है जिस खेल का जन्म सदियों पहले हमारे ही देश में हुआ था भारत में हुआ था आई ये आयोजन है 28 जुलाई से शुरू हो रहे शतरंज ओलंपियाड का

साथियो जब बात खेलों की हो रही है तो मैं आज भारत की सर्वाधिक प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में उनमें से एक मिताली राज की भी चर्चा करना चाहूँगा आई उन्होंने इसी महीने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है जिसने कई खेल प्रेमियों को भावुक कर दिया है आई मिताली महज एक असाधारण खिलाड़ी नहीं रही हैं बल्कि अनेक खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत भी रही हैं आई मैं मिताली को उनके भविष्य के लिए ढ़ेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आई
मेरे प्यारे देशवासियो हम मन की बात में वास्ते टो वेल्थ से जुड़े सफल प्रयासों की चर्चा करते रहे हैं
ऐसा ही एक उदाहरण है मिज़ोरम की राजधानी आइजवाल का
आइजवाल में एक खूबसूरत नदी है चिटे लुई जो बरसों की उपेक्षा के चलते गंदगी और कचरे के ढेर में बदल गई
पिछले कुछ वर्षों में इस नदी को बचाने के लिए प्रयास शुरू हुए हैं
इसके लिए स्थानीय एजेंसियां स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय लोग मिलकर सेव चिटे लुई एक्शन प्लान भी चला रहे हैं
नदी की सफाई के इस अभियान ने वास्ते से वेल्थ क्रिएशन का अवसर भी बना दिया है
दरअसल इस नदी में और इसके किनारों पर बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और पॉलिथीन का कचरा भरा हुआ था
नदी को बचाने के लिए काम कर रही संस्था ने इसी पॉलिथिन से सड़क बनाने का फैसला लिया यानि जो कचरा नदी से निकला उससे मिज़ोरम के एक गाँव में राज्य की पहली प्लास्टिक रोड बनाई गई यानि स्वच्छता भी और विकास भी
साथियो ऐसा ही एक प्रयास पुडुचेरी के युवाओं ने भी अपनी स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए शुरू किया है
पुडुचेरी समंदर के किनारे बसा है
वहाँ के बीचेस और समुद्री खूबसूरती देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं
लेकिन पुडुचेरी के समंदर तट पर भी प्लास्टिक से होने वाली गंदगी बढ़ रही थी इसलिये अपने समंदर बीचेस और इकोलॉजी को बचाने के लिए यहाँ लोगों ने रिसाइक्लिंग फोर लाइफ अभियान शुरू किया है
आज पुडुचेरी के कराईकल में हजारों किलो कचरा हर दिन कलेक्ट किया जाता है और उसे सेग्रीगेट किया जाता है
इसमें जो आर्गेनिक कचरा होता है उससे खाद बनाई जाती है बाकी दूसरी चीजों को अलग करके रिसाइकिल कर लिया जाता है
इस तरह के प्रयास प्रेरणादायी तो है ही सिंगल उसे प्लास्टिक के खिलाफ भारत के अभियान को भी गति देते हैं
साथियो इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हिमाचल प्रदेश में एक अनोखी साइक्लिंग रैली भी चल रही है
मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ
स्वच्छता का सन्देश लेकर साइकिल सवारों का एक समूह शिमला से मंडी तक निकला है
पहाड़ी रास्तों पर करीब पौने दो सौ किलोमीटर की ये दूरी ये लोग साइकिल चलाते हुए ही पूरी करेंगे
इस समूह में बच्चे भी और बुज़ुर्ग भी हैं
हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे हमारे पहाड़नदियाँ समंदर स्वच्छ रहें तो स्वास्थ्य भी उतना ही बेहतर होता जाता है
आप मुझे इस तरह के प्रयासों के बारे में जरुर लिखते रहिए
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे देश में मानसून का लगातार विस्तार हो रहा है
अनेक राज्यों में बारिश बढ़ रही है
ये समय जल और जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास करने का भी है
हमारे देश में तो सदियों से ये ज़िम्मेदारी समाज ही मिलकर उठाता रहा है
आपको याद होगा मन की बात में हमने एक बार स्टेप वेल्स यानि बावड़ियों की विरासत पर चर्चा की थी
बावड़ी उन बड़े कुओं को कहते हैं जिन तक सीढ़ियों से उतरकर पहुँचते हैं
राजस्थान के उदयपुर में ऐसी ही सैकड़ों साल पुरानी एक बावड़ी है सुल्तान की बावड़ी
इसे राव सुल्तान सिंह ने बनवाया था लेकिन उपेक्षा के कारण धीरेधीरे ये जगह वीरान होती गयी और कूड़ेकचरे के ढेर में तब्दील हो गयी है
एक दिन कुछ युवा ऐसे ही घूमते हुए इस बावड़ी तक पहुंचे और इसकी स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए
इन युवाओं ने उसी क्षण सुल्तान की बावड़ी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया
उन्होंने अपने इस मिशन को नाम दिया सुल्तान से सुरतान
आप सोच रहे होंगे कि ये सुरतान क्या है
दरअसल अपने प्रयासों से इन युवाओं ने ना सिर्फ बावड़ी का कायाकल्प किया बल्कि इसे संगीत के सुर और तान से भी जोड़ दिया है
सुल्तान की बावड़ी की सफाई के बाद उसे सजाने के बाद वहां सुर और संगीत का कार्यक्रम होता है
इस बदलाव की इतनी चर्चा है कि विदेश से भी कई लोग इसे देखने आने लगे हैं
इस सफल प्रयास की सबसे ख़ास बात ये है कि अभियान शुरू करने वाले युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं
संयोग से अब से कुछ दिन बाद एक जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है
मैं देश के सभी सीएस को अग्रिम बधाई देता हूँ
हम अपने जलस्त्रोतों को संगीत और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों से जोड़कर उनके प्रति इसी तरह जागरूकता का भाव पैदा कर सकते हैं
जल संरक्षण तो वास्तव में जीवन संरक्षण है
आपने देखा होगा आजकल कितने ही नदी महोत्सव होने लगे हैं
आपके शहरों में भी इस तरह के जो भी जलस्त्रोत हैं वहां कुछनकुछ आयोजन अवश्य करें
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे उपनिषदों का एक जीवन मन्त्र है चरैवेतिचरैवेतिचरैवेति आपने भी इस मन्त्र को जरुर सुना होगा
इसका अर्थ है चलते रहो चलते रहो
ये मंत्र हमारे देश में इतना लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि सतत चलते रहना गतिशील बने रहना ये हमारे स्वभाव का हिस्सा है
एक राष्ट्र के रूप में हम हजारों सालों की विकास यात्रा करते हुआ यहाँ तक पहुँचे हैं
एक समाज के रूप में हम हमेशा नए विचारों नए बदलावों को स्वीकार करके आगे बढ़ते आए हैं
इसके पीछे हमारे सांस्कृतिक गतिशीलता और यात्राओं का बहुत बड़ा योगदान है
इसीलिये तो हमारे ऋषियों मुनियों ने तीर्थयात्रा जैसी धार्मिक जिम्मेदारियाँ हमें सौंपी थीं
अलगअलग तीर्थ यात्राओं पर तो हम सब जाते ही हैं
आपने देखा है कि इस बार चारधाम यात्रा में किस तरह बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए
हमारे देश में समयसमय पर अलगअलग देवयात्राएं भी निकलती हैं
देव यात्राएं यानी जिसमें केवल श्रद्धालु ही नहीं बल्कि हमारे भगवान भी यात्रा पर निकलते हैं
अभी कुछ ही दिनों में 1 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध यात्रा शुरू होने जा रही है
ओड़िसा में पुरी की यात्रा से तो हर देशवासी परिचित है
लोगों का प्रयास रहता है कि इस अवसर पर पुरी जाने का सौभाग्य मिले
दूसरे राज्यों में भी जगन्नाथ यात्रा खूब धूमधाम से निकाली जाती हैं
भगवान जगन्नाथ यात्रा आषाढ़ महीने की द्वितीया से शुरू होती है
हमारे ग्रंथों में आषाढस्य द्वितीयदिवसेरथयात्रा इस तरह संस्कृत श्लोकों में वर्णन मिलता है
गुजरात के अहमदाबाद में भी हर वर्ष आषाढ़ द्वितीया से रथयात्रा चलती है
मैं गुजरात में था तो मुझे भी हर वर्ष इस यात्रा में सेवा का सौभाग्य मिलता था
आषाढ़ द्वितीया जिसे आषाढ़ी बिज भी कहते हैं इस दिन से ही कच्छ का नववर्ष भी शुरू होता है
मैं मेरे सभी कच्छी भाईयोबहनों को नववर्ष की शुभकामनाएँ भी देता हूँ
मेरे लिए इसलिए भी ये दिन बहुत खास है मुझे याद है आषाढ़ द्वितीया से एक दिन पहले यानी आषाढ़ की पहली तिथि को हमने गुजरात में एक संस्कृत उत्सव की शुरुआत की थी जिसमें संस्कृत भाषा में गीतसंगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं
इस आयोजन का नाम है आषाढस्य प्रथम दिवसे
उत्सव को ये खास नाम देने के पीछे भी एक वजह है
दरअसल संस्कृत के महान कवि कालिदास ने आषाढ़ महीने से ही वर्षा के आगमन पर मेघदूतम् लिखा था
मेघदूतम् में एक श्लोक है आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघम् आश्लिष्ट सानुम् यानि आषाढ़ के पहले दिन पर्वत शिखरों से लिपटे हुए बादल यही श्लोक इस आयोजन का आधार बना
साथियो अहमदाबाद हो या पुरी भगवान् जगन्नाथ अपनी इस यात्रा के जरिए हमें कई गहरे मानवीय सन्देश भी देते हैं
भगवान जगन्नाथ जगत के स्वामी तो हैं ही लेकिन उनकी यात्रा में गरीबों वंचितों की विशेष भागीदारी होती है
भगवान् भी समाज के हर वर्ग और व्यक्ति के साथ चलते हैं
ऐसे ही हमारे देश में जितनी भी यात्राएं होती हैं सबमें गरीबअमीर ऊंचनीच ऐसे कोई भेदभाव नजर नहीं आते
सारे भेदभाव से ऊपर उठकर यात्रा ही सर्वोपरि होती है
जैसे कि महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा के बारे में आपने जरुर सुना होगा
पंढरपुर की यात्रा में कोई भी न बड़ा होता है न छोटा होता है
हर कोई वारकरी होता है भगवान् विट्ठल का सेवक होता है
अभी 4 दिन बाद ही 30 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है
पूरे देश से श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मूकश्मीर पहुँचते हैं
जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग उतनी ही श्रद्धा से इस यात्रा की ज़िम्मेदारी उठाते हैं और तीर्थयात्रियों का सहयोग करते हैं
साथियो दक्षिण में ऐसा ही महत्व सबरीमाला यात्रा का भी है
सबरीमाला की पहाड़ियों पर भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए ये यात्रा तब से चल रही है जब ये रास्ता पूरी तरह जंगलों से घिरा रहता था
आज भी लोग जब इन यात्राओं में जाते हैं तो उसे धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर रुकनेठहरने की व्यवस्था तक गरीबों के लिए कितने अवसर पैदा होते हैं यानी ये यात्राएं प्रत्यक्ष रूप से हमें गरीबों की सेवा का अवसर देती हैं और गरीब के लिए उतनी ही हितकारी होती हैं
इसीलिये तो देश भी अब आध्यात्मिक यात्राओं में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए इतने सारे प्रयास कर रहा है
आप भी ऐसी किसी यात्रा पर जाएंगे तो आपको आध्यात्म के साथसाथ एक भारतश्रेष्ठ भारत के भी दर्शन होंगे
मेरे प्यारे देशवासियो हमेशा की तरह इस बार भी मन की बात के जरिए आप सभी से जुड़ने का ये अनुभव बहुत ही सुखद रहा
हमने देशवासियों की सफलताओं और उपलब्धियों की चर्चा की
इस सबके बीच हमें कोरोना के खिलाफ सावधानी को भी ध्यान रखना है
हाँलाकि संतोष की बात है कि आज देश के पास वैक्सीन का व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है
हम 200 करोड़ वैक्सीन डोज़ के करीब पहुँच गए हैं
देश में तेजी से प्रीकॉशन दोसे भी लगाई जा रही है
अगर आपकी सेकंड दोसे के बाद प्रीकॉशन दोसे का समय हो गया है तो आप ये तीसरी दोसे जरुर लें
अपने परिवार के लोगों को ख़ासकर बुजुर्गों को भी प्रीकॉशन दोसे लगवाएँ
हमें हाथों की सफाई और मास्क जैसी जरुरी सावधानी भी बरतनी ही है
हमें बारिश के मौसम में आसपास गन्दगी से होने वाली बीमारियों से भी आगाह रहना है
आप सब सजग रहिए स्वस्थ रहिए और ऐसी ही ऊर्जा से आगे बढ़ते रहिए
अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे तब तक के लिए बहुतबहुत धन्यवाद नमस्कार